नीचे जो चादर है वो भी रेड कलर की है।

जो छोटे-छोटे भागों में विभाजित है।

ओर पुरुष है छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर पूजा किए जा रहे हैं |

मिट्टी कलर का भी कलर किया गया है |

तीन डब्बा है तीन डब्बे में एक डब्बा में किरासन एक डब्बा में लाल तेल है।